सामने बोहोत ही सारे बैट्स रखे गए हैं जिनपे लिखा है टोन और नीचे हर कलर के बॉल्स हैं वाइट रेड संतरा कलर का और वहाँ पे एक ब्लैक कलर का लाइन है |

ये सामने एक मछली बेचने का दुकान है जहाँ पे एक औरत मछलीयाँ बेचती हुई नज़र आ रही है वहां पे बहुत सारे लोग मछली खरीदने के लिए खड़े हुए हुए हैं एक आदमी है जो वाइट कलर की शिर्ट --

यहाँ पर सामने बहुत बड़ी नदी है और एक नाव है जिस पे काफी सारे लोग है नाइ है जो की एक नाइ --